यह एक बहोत बड़ा खेल का मैदान है।

जो कि सजाई हुई है गुब्बारों का एक साइड डेकोरेशन करा हुआ --

इसमें पेड़ पौधे लगे हुए है।

जो की लाइब्रेरी जैसी दिख रही है इसमें बहोत सारी किताबें है।

इसमें एक लड़का किताब लेकर खड़ा है।

जिम कर रहे हैं एक अपनी बाइसेप्स दिखा रहा है।

चिप्स और बहोत सारी चीजे मिलती हैं यहां पर स्कैनर भी लगे हुए हैं।

जिसकी दीवारे लकड़ी से बनी हुई है और रंग सफेद है।

यह एक हॉस्पिटल का कमरा है जिसकी दीवारों का रंग सफेद और नीला है।

तालाब है जिसमे पानी भरा हुआ--